यहाँ पे एक रूम दिखाई दे रहा है उसके दीवाल का कलर वाइट और ये --

ऊपर चद्दर शीट दिखाई दे रहा है कुछ पेड़-पौधे भी दिखाई दे रहा यहाँ पे पोस्टर लगे हुए --

और बिजली का खम्बे भी दिखाई दे रहें हैं और ऊपर आसमान भी दिखाई दे निचे जमीन दिखाई दे रही है।

पे एक काँच लगा हुआ है जिसमें गेट लगा हुआ दिखाई दे रहा है और एक ए.सी. भी लगी हुई है।

यहाँ पे एक रूम दिखाई दे रहा है जिसकें दीवाल का कलर व्हाइट और रेड है यहाँ पे कुछ पोस्टर वगेरा लगे हुए --

जलती हुई दिखाई दे रहे है यहाँ पे बिजली के तार भी दिखाई दे रही है और कुछ पेड़-पौधे भी दिखाई दे रहें हैं।

कुछ लाइटे भी जलती हुई दिखाई दे रही है और तस्वीर भी लगी हुई है।

दिखाई दे रहे हैं और बहोत सारी बुकें भी रखी हुई दिखाई दे रही हैं।

इसपे बहुत सारे कपड़े पड़े हुए हैं और --

यहाँ पे एक रूम दिखाई दे रहा है इसके दीवाल के कलर है येल्लो पिंक ।

यहाँ पे शटर भी दिखाई दे रही है और कुछ लोग खड़े हुए भी दिखाई दे रहे यहाँ पे एक कैमरा भी लगा हुआ है और चेयर भी रखी हुई --

ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है और निचे ज़मीन भी दिखाई दे रही है और बिजली के तार भी दिखाई दे रही है।

यहाँ पे एक बस स्टैंड दिखाई दे रहा है जिसमे बहुत सारी बसे खड़ी हुई है जिनका कलर पर्पल व्हाइट --

कुछ लाइटें जलती हुई दिखाई दे रही है और एक ए.सी. भी लगी हुई है यहाँ।

फिर लाइट भी लगी हुई है बल्ब भी जलते हुए दिखाई दे रहा है और बिजली की तार भी दिखाई दे रही है।

मंदिर भी बनी हुई है इनकी दीवाल का कलर रेड और येल्लो है।

यहाँ पे एक मूर्ति रखी हुई है और यहाँ पे बहुत सारे फूलों की माला भी लगी --